घर के समान के लिए रंग बिरंगे बेड शीट लगी हुई हैं तकिये लगे हुए है ये एक अच्छी दुकान है बहोत ही सस्ते --

यहां पर कांच के दरवाजे खिड़कियां लगी हुई है ये एक अच्छी दुकान है यहां पर होम डेकोर मेटल आर्ट सब को सामान मिलता है।

ये मकान बना हुआ है जिसका नाम खिलजी टावर है यहां पर लाल कलर का मकान और व्हाइट कलर का मकान है यहां पर --

यहां पर नीचे एक चौकी भी बनी हुई है बहुत सारे पेड़-पौधे हरियाली है यहां पर लोग घूमने के लिए आते-जाते रहते हैं और यहां पर लोग फोटो खिंचवाते हैं यह एक अच्छी जगह है।

यहां एक सुंदर दृश्य छोटा सा गेट भी है पास में यहां पर लोग घूमने के लिए आते जाते रहते हैं इनके बाहर दुकाने में भी खड़ी हुई --

यह एक रेस्टोरेंट का फोटो है जहां पे बहोत अच्छा खाना बनाया जाता है दो लोग खड़े हुए हैं दो स्टील की टंकियां पड़ी हुई गिलास पड़े हुए हैं।

यह एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका रंग गुलाबी है इसके आगे पौधे लगे हुए हैं खाली मैदान है।

लाइट लगी हुए हैं बाहर डस्टबिन रखे हुए हैं कचरा डालने के लिए यह बहोत ही साफ जगह है खंभा लगा हुआ है उन पर एक --

एक लोटा है दरवाजा है घड़ी बनाई हुई है पोस्टर लगे हुए हैं माता जी के ये एक अच्छा मंदिर है लाइटें चल रही है।

रेड और व्हाइट कलर की कुर्सियां पड़ी हुई हैं सामने एक टेबल रखा हुआ है।

एक कूलर नज़र आ रहा है टेबल नज़र आ रही है बैठने के लिए कुर्सी नज़र आ रही है।

बेल्ट जूते यहां पर मेरेको नजर आ रहें हैं यहां पर लाइटे चल रही है पंखे चल रहें है ए_सी चल रहा है।